और हमें बिजली के खम्भे भी दिख रहे हैं। उन पे बड़े-बड़े काले केबल नज़र आ रहे हैं।

सजाया गया है और हमें कुछ झूमर भी लटकती हुई नज़र आ रही हैं।

हमें एक एयरपोर्ट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो बोहत सुन्दर लग रहा है। पास ही में हमें एक हरा-भरा पेड़ नज़र आ रहा है।

उसके साथ और भी व्यक्ति खड़े हुए हैं। साथ ही एक मेहला है और कुछ --